यह एक ढाबा है और यहां पे बरामदे में दो तीन चौकियां लगी है।

मां मुंडेश्वरी अ फास्ट फ्रूट कर्नल लिखा गया है।

इसके आगे सीसे के बहोत बड़ी अलमारियां लगी हुई है।